यह एक होटल हैं और यहां पे बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने चाय पीने और यहां का खाना काफी स्वादिष्ट होता है।

यह एक पार्क है और यहां पे बहुत सारे लोग आते हैं।

पोस्ट ऑफिस है जामताड़ा पोस्ट ऑफिस है और यह पोस्ट ऑफिस काफी बड़ा है और इसमें दूर - दूर से लोग चिट्टियां भेजते हैं और यहां के पोस्टमैन चिट्टियों उनके सही जगह पर पहुंचाते हैं।